इस पिक्चर में हमे बहुत ही सुन्दर सिटी दिखाई दे रही है। पे जो पेड़ों से घिरी हुए है और पहाड़ों से घेरी हुई--

दी गयी हुई पिक्चर में हमे एक मस्जिद नजर आ रहा है जिसमे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए है और एक दूसरे से गले मिल रहे है।

ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

हुई पिक्चर में हमे एक बहुत ही सुंदर स्टेज देखने को मिल रहा है जो की बहुत ही सुंदर है व्हाइट और बहुत ही अलग-अलग प्रकार के फूलों से उसे डेकोरेट किया गया है। ।

दी गई हुई पिक्चर में हमे एक शॉप नजर आ रही है यहाँ पर बोहोत सारे समान भी टंगे हुए हैं।

बिल्डिंग के बाहर हमे बहुत सारे फुट-पाथ नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।

दी गई हुई तस्वीर में एक घर के सामने एंट्री के लिए एक बहुत ही सुंदर गेट बनाया गया है।